उं अनेक रंग का कपड़ा है लाल हरा --

अम ऊपर से गाँछ वृक्ष दिखाई पड़ रहा है एगो मकान है।

किराना दुकान में ढेर सारा आईटम है।

है कॉलेज का फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं।

वॉल पे ढ़ेर सारा सामान रखा हुआ है ।